फूल वूल के ई सब राखलो छे।

होटल का कुछो सीन लागे छे कोनो लागे छे मी-मीटिंग बहुत सारा --

बहुत बड़ा एक हॉल छे।